यह एक हॉस्पिटल के काउंटर का दृश्य है।

जहां पर एक फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज बहोत बड़ा है फ्रिज में अनेको प्रकार की पेप्सी है।

ये इस कैंटिंग का नाम जे ए डी डबल ओ जेड है।

यह एक वाटिका का दृश्य है जिसमें एक हॉल है हॉल में आज शादी है।

यह एक माला का दृश्य है जो कि भगवान के गले में पहराइ जाती है।

नदी का पानी हरा दिख रहा है नदी के बीच में से एक पुल जा रहा है और बहोत लंबा है और यहां पर पूल के ऊपर से गाड़ी वाड़ी जा रही है।

क्योंकि एक मरीज के घर पर मरीज को दवाई देने के लिए आया है। यह मरीज --

एक शोरूम का दृश्य है जहां पर लिखा हुआ है हीरो शोरूम या उद्घाटन हुआ है।

यह एक ट्रेन का फोटो है जिस पर लिखा हुआ है आई.सी.एफ. ।

पुलिस थाना बहोत बड़ा है। यहां आज गेट बंद है और यहां बाजार लग रहा है।

यह एक छोटे से क्लीनिक का फोटो लग रहा है। यहाँ पर इस साइड एक ब्लैक मिरर --

की टेबल डली हुई है और एक कुर्सी है और चार चेयर वैसे डली हुई है बैठने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है खूबसूरत लाइफ ।

दी आई.आई.टी. और एक पेंटिंग लगी हुई है।

यह एक कॉलेज का दृश्य है जहां पर लिखा हुआ है सरस्वती मेडिकल कॉलेज ।

यह एक शादी का दिन का दृश्य है जहां पर टेंट लगाया हुआ है।

और ऊपर एक पंछी पंख का निशान है और कुछ लोग साइड में खड़े हैं शोरूम के। एक साइकिल दिख रही है और एक बोर्ड लगा हुआ है।

वो लड़कियां खड़ी हैं और कुछ मेन है यहाँ पर।

यह एक गाड़ी का दृश्य है इस ये किआ गाड़ी है।

लकड़ी पर कुछ कपड़े सुख रहे हैं और पीछे कुछ केले के पत्ते टांग रखे हैं। मोत मोर बहोत सुन सुन्दर दिख रहा है।

यह एक शादी में बनी हुई गैलरी का दृश्य है जो कि वाटिका में सजा रखी है और यहाँ पे कुछ बड़े-बड़े गुलदस्ते रखे हुए हैं।